मुझे एक अंदर व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है मुझे फोनपे का बोर्ड दिखाई दे रहा है मुझे आई लव मोइ मोटो का बोर्ड भी दिखाई दे रहा है मुझे कुछ चेयर भी दिखाई दे रही हैं मै कुछ --

जैसे कि मैं देख पाया हूं मुझे एक बैग की दुकान दिख रही है जो कि हिंदुस्तान बैग हाउस के नाम से है।

मुझे कुछ कपड़े भी दिखाई दे रहे हैं मुझे टीन शेड भी दिखाई दे रही है।

मुझे शटर दिखाई दे रही है जो की हरे कलर की है मुझे आगे एक बड़ी लाइट भी दिखाई दे रही है।

जैसा कि मैं देख पाया हूं मुझे काफी सारे गमले दिखाई दे रहे है वह ढकोनियां दिखाई दे रही है ।

वे कुछ जालियां भी बनी हुई हैं जैसे कि मैं देख पा रहा हूं मुझे आस पास काफी सारे पेड़ दिखाईं दे रहे है मुझे कुछ बिल्डिंग भी नज--

जैसे कि मैं देख पा रहा हूं मुझे एक सूट दिखाई दे रही है।

जिसमें मुझे काफी तरह की क्रीम्स फिर पोडर दिखाई दे रही है मुझे कुछ पॉन्स की डिब्बियां दिखाई दे रही है मुझे कुछ जोया एल्मॉन्स की डिब्बी दिखाई दे रही है।

जैसे की मैं देख पाया हूं मुझे एक शॉप दिखाई दे रही हैं।

मुझे दिखाई दे रहा है एक कूलर दिखाई दे रहा है मुझे काफी डेकोरेटेड फूल दिखाई दे रहे हैं।

मुझे आगे गोबर भी नजर आ रहा है मुझे बिल्डिंग नजर आ रही है जो ऑरेंज कलर की है।

मुझे काफी सारे बम्बू भी नजर आ रहे हैं मुझे छोटे-छोटे पौधे भी नज़र आ रहे हैं।

मुझे सटर भी दिखाई दे रही है मुझे नीबू मिर्ची भी दिखाई दे रहे हैं।

मुझे अशोक के पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं जैसा कि मैं देख पाया हूं मुझे एक सीढ़ी भी दिखाई दे रही है पर अंदर की तरफ़ --

जैसे कि मैं देख पाया हूं मुझे एक शॉप दिखाई दे रही है शॉप में मुझे काफी तरह के सिंक दिखाई दे रही हैं जो कि वाइट कलर की हैं।

मुझे एक सिढ़ी भी दिखाई दे रही है व कुछ पॉलिथीन भी दिखाई दे रही है मुझे एक टेबल फैन भी दिखाई दे रहा है ।

जैसा की मैं देख पाया हूँ मुझे एक बगीचा दिखाई दे रहा है जिसमें चारों तरफ त्रिपाल लगा हुआ है जो हरे कलर का है --

जैसा की मैं देख पाया हूँ मुझे एक फिटनैस जिम का --

जैसा कि मैं देख पाया हूं मुझे एक बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है इसके बीचो-बीच मुझे एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है।

मुझे ब्रश भी दिखाई दे रही है मुझे शीशे की रैक्स भी दिखाई दे रही है मुझे पॉलिथीन भी दिखाई दे रही है।

मुझे काफी सारे नीचे रोड्स पर बैनर दिखाई दे रहे हैं मुझे कुछ रिक्शे भी दिखाई दे रहे हैं।

एक ग्रे कलर की शेरवानी है एक हाफ़ जैकेट भी है मुझे तीन फ्लोर भी दिखाई दे रहे हैं ।

एक व्यक्ति चादर को ले जाता हुए नजर आ रहा है मुझे सामने की तरफ काफी बड़ा मैदान नजर आ रहा है।

मुझे कुछ साइड में छोटे-छोटे पौधे नजर आ रहे हैं मुझे गीली मिट्टी भी नजर आ रही है मुझे साइड में पिलर भी नजर आ रहे हैं।

मुझे इसके साइड में काफ़ी छोटे छोटे गमले नजर आ रहे हैं फिर छोटे छोटे पौधे नजर आ रहे हैं ।

मुझे झंडे भी दिखाई दे रहे हैं। मुझे काफी सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।